नीचे भी वाइट कलर की बाउंड्री बनी हुई --

यहां डिपॉजिट कर सकते हैं यहां आपको --

छाछ रखी हैं बहुत दुकान है पर उन्होंने दुकानदार रखी हुई है --

इसका कलर करा हुआ है ट्यूबलाइट है आस-पास पक्षी-पक्षी अ बंदे हुए हैं यहाँ से लोग पक्षी ले जाते है ।

आस-पास सब जगह पानी ही पानी है यहाँ वॉटर ही --

इधर पेड़-पौधे घर दिख रहे हैं पेड़-पौधे भी दिख रहे।

यहाँ बाइक रखी हुई है किराने की दुकान है | यहाँ पानी वानी ड्रिंक्स व्रिंक्स सब मिलती है | पहिये रखे हुए हैं और यहाँ |

दांत दिख रहे है आस-पास के कलर बहुत से कलर की बुक्स --

एक लड़का खड़ा हुआ है जो फोटो खिंचवा रहा है जिसस के सामने जी चर्च में |

ऊपर से बहुत ही अचे दृश्य लग रहा ह दृश्य मतलब यहाँ शादी का माहौल है तो अच्छा तो लगना ही चाहिए।